यह एक चित्र है इसमें स्टूल और टेबिल नजर आ रहे हैं।

लकड़ियों का घर दिख रहा है।

इसमें कुछ खेत दिख रहे हैं।

एक पार्टी भी दिख रही है।

और हेयरकट सैलून दिख रहा है।

जिसमें एक अंकल भी खड़े हैं।

और बिजली के खंबे दिख रहे हैं।

इसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है।

जिसमें बहुत सारी बोतलें रखी हुई हैं।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

एक पाइप भी लगा हुआ है।

एक बाइक भी दिख रही है और बहुत सारा पानी भी भरा है।

जिसमें बहुत सारी लाइटें भी हैं।

घर और बिल्डिंग और बहुत से पेड़ भी हैं और नीचे दुभर भी लग रही है।

बिजली के खंबे भी दिख रहे हैं।

और साइड में बहुत सारे लाइट के खंबे भी हैं।

जिसको फूल और लाइटों की सहायता से सजाया गया है।

जिसमें सर्किटें भी लगी हुई हैं।

और बहुत सी लाइटें भी जल रही हैं।

और आसपास बहुत बड़े-बड़े पेहेड़ है।

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

जो कि अपना कार्य कर रहे हैं।

और बहुत से टाल्स भी लगे हुए हैं।

और आसपास बहुत हरियाली भी है।

और बहुत से पंखे व लाइटें भी लगी हुई हैं।

जिसमें कुछ लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हुए दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर कुछ हैं।

यह एक चित्र है चित्र में एक डिमार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ--

कुछ चम्मच और पलेटे भी हैं।

आस-पास बहुत से पेड़ भी दिख रहे हैं।